मुझे एक फोटो में एक आदमी भी दिखाई दे रहा है।

मुझे इसमें एक फ्लेक्स भी दिखाई दे रहा है।